यह चित्र एक जगह का नजर आ रहा है जहा पीछे की ओर सफ़ेद रंग की दीवार है।

यह चित्र एक सड़क का नजर आ रहा है। जहा पर सामने की और एक गाड़ी के उपर कुछ बाजे लगे हुए नजर आ रहे है।

सामने दीवार पर एक माता की तस्वीर भी नजर आ रही है । नीचे की और फर्श लाल है।

जिस का रंग सफ़ेद है। कंकाल के ऊपर की और एक नीले वे सफ़ेद संग की मशीन लगी नजर आ रही है। पीछे दीवारों का रंग हरा है।

यह चित्र एक भवन का नजर आ रहा है जिसका रंग हरा नजर आ रहा है भवन के दूसरी ओर एक छोटा मंदिर भी बना नजर आ रहा है।

यह चित्र एक बहुत बड़ी नदी का नजर आ रहा है जहा पर एक तरफ छोटी कीसती नजर आ रही है वे दूसरी ओर एक बहुत बड़ा पानी का जहाज नजर आ रहा है।

सामने की ओर एक बहुत बड़ा शीशा लगा नजर आ रहा है। वेह दूसरी ओर एक खिड़की बनी नजर आ रही है।

यह चित्र एक खेत का नजर आ रहा है। जहा नीचे की और कुछ हरा घास लगा नजर आ रहा है। वह कुछ सुखा घास भी पड़ा नजर आ रहा है।

खेत मैं एक बकरी बैठी नजर आ रही है जिसका रंग काला वे सफेद है।